यहाँ हमें एक रोड दिख रही है रोड पे दो कार है जो हमें फ्रंट में दिखाई दे रही है कार के उस साइड नीचे एक रोड है जहाँ पे हमें काफी सारी जो है बाइक्स दिखाई दे रही है ऑटो दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ हम सामने हमें व्हाइट कलर की स्कार्पिओ दिखाई दे रही है जिसमे नीचे कुछ ब्लैक कलर भी है स्कार्पियो के पीछे एक बहुत बड़ा हमे जो है रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है कुछ लाइटस के पोल भी लगे हुए हैं।

कार की साइड में हमें बहुत ही बढ़िया सा पेड़ दिखाई दे रहा है हरा-भरा कुछ घर बने हुए हैं कार के पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग है वाइट कलर की।

यहाँ हमें कार दिखाई दे रही है जो की बहुत सुंदर लग रही है कार के पीछे एक वाइट कलर का हमें घर दिखाई दे रहा है जिसपे ब्लू कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है ये --

बिल्डिंग के सामने दो हरे-भरे हमें गार्डन दिखाई दे रहे हैं काफी सारे लाइटस की पोल है बिल्डिंग के बाहर एक और रोड है जिस पे कार हैं।

ब्रिज के ऊपर काफी सारे लोग है एक बहती हुई बहुत बड़ी नदी है ब्रिज के नीचे हमें कुछ ग्रीन कलर के टापू भी दिखाई दे रहे हैं नदी के दोनों साइड बहुत ही हरे भरे पेड़ भी है।

यहाँ हमें दो बड़ी -बड़ी व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसमें रेड कलर भी पेंट किया गया है सामने वाले बिल्डिंग के जस्ट सामने एक जो है टेंट लगा हुआ है वाइट कलर का उसका शटर आधा खुला दिख रहा है।

यहाँ पर हमें जो हैं बहुत अच्छी सी बिल्डिंग या घर बना दिखाई दे रहा हैं जो कि ऊपर से छत रेड कलर से है और दिवाले उसकी लाइट पिंक कलर से पेंट है खूबसूरत सी यहाँ पे खिड़कियाँ कांच लगाए गए हैं।

यह हमें कार दिखाई दे रही हैं कार ग्रे कलर की है हमें दो टायर दिखाई दे रहे हैं साइड में एक मिरर दिख रहा है फ्रंट की दो हेडलाइट दिखाई दे रहे है।

यहाँ हमें एक रूम दिखाई दे रहा है रूम के ऊपर व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है गेट बंद है गेट पे ब्राउन कलर का ---